स्कूटर लिखा हुआ है यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

आप देख सकते हैं सामने हेयर कटिंग हो रही है एक बच्चा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है।

को कॉलेज है और यहाँ पे बहुत साड़ी बाइक खड़ी हुई है।